यह एक हरा भरा छवि है में सामने दो खजूल के पेड़ हैं।

फूल का कलर पीला लाल गुलाबी है उसमें पत्ता भी लगा हुआ है पत्ता का कलर ग्रीन है।

एक पेड़ भी दिख रहा है पेड़ का कलर ग्रीन है।

इस इमेज में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक बच्चे का टी शर्ट का कलर रेड है।

यह एक घर के अंदर का फोटो है।

सामने बहुत सारे गमले रखे हुए हैं गमले का कलर रेड है।

पीछे एक पर्दा लगा हुआ उस पर्दे का कलर ग्रीन है।

इस फोटो में हमें एक पेड़ दिख रहा है जो कि पेड़ का कलर ग्रीन है।